आसमान खुला है वे दूर घाने जंगल नज़र आ रहा है।

यहाँ एक पार्लर दिखाया गया है जहां महिला बैठी नज़र आ रही--

यहाँ एक धार्मिक स्थल दिखाया गया है एक मंदिर बना नज़र आ रहा है।

बैंक के अंदर पुरुष खड़े नज़र आ रहे है।

यहाँ एक गाड़ी भी खड़ी नज़र आ रही है।

यहाँ एक क्लिनिक दिखाया गया है एक व्यक्ति हाथ में कोट लेकर जाता दिखाई दे रहा है।

एक बैग मैहरून रंग का व दूसरे काले रंग का दिखाई दे रहा है यहाँ लकड़ी का सामान भी रखा है।

यहाँ विशाल टेंट लगा हुआ है टेंट सफ़ेद लाल व नीले रंग का लगा है सामने ही कुछ व्यक्ति बैठे नज़र आ रहे है सामने फूलो की माला से सजाया हुआ है।

यहाँ एक पुस्तकालय दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारी पुस्तके रखी है।

जिस पर फूलो की मालाए लगी हुई है व एक सामने ही पुरुष दिखाई दे रहा है।

ये कुर्सिया लोहे की बनी हुई है सामने शीशा लगा हुआ है।

यहाँ एक घाना जंगल दिखाया गया है जंगल के बीच से दो सड़के जाती हुई दिखाई दे रही है।

जंगल में ऊँचे-ऊँचे बड़े-बड़े पेड़ लगे दिखाई दिए और यहाँ सड़क--

जहां बहुत सारी लकड़िया पड़ी व लोहे की--

होटल मे पर्दे लगे है होटल का नाम गेटवे कर्नाटका है होटल मे दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे है।

एक साइकिल पे आया व्यक्ति सब्जी खरीदता दिखाई दे रहा है व एक महिला थैला ले जाती हुई दिखाई दे रही है।

पीछे एक मूर्ति दिखाई गई है वो भी नृत्य करते दिखाए गए है।

यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई गई है वहाँ लोहे के फ्रेम पर लोहे का कूलर रखा हुआ दिखाया गया है।

यहाँ दो कुर्सिया भी रखी है बोर्ड पर कागज से कुछ बनाकर चिपकाया गया है एक सफ़ेद बोर्ड लगा है।

यहाँ एक जिम दिखाया गया है जिम मे कई प्रकार कि कशरत करने कि मशीने रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ एक स्कूल दिखाया गया है स्कूल कि छत लाल रखी गयी है यहाँ बल्ब वाले दो खम्बे लगाए गए है वह बिच मे एक हमारे देश का झंडा लगा नज़र आ रहा है।

यहाँ बराबर मे कुछ कपड़े रखे हुए नज़र आ रहे है वे दो व्यक्ति सफ़ेद रंग कि शर्ट मे पेहने खड़े हुए दिखाई दे रहे है।